माता काली जी की मूर्ति है जो उसके निचे टाइल्स लगे हुए है सो सफ़ेद कलर के है| इसके पीछे टाइल्स लगे हुए है।

यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके आजू बाजु में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। जिसका कलर हरा है और सामने आसमान दिखाई दे रहा है। जिसका कलर नीला है।

सामने नज़ारा दिखायी दे रहा है इसमे उपर एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर लाइट लगी हुई है।

ए एक सड़क का सीन है। यहाँ पर कुछ प्युपल और लेडीजे जा रही हैं। सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो जो उसमे चोटिया बनी हुईं हैं। औ उसमें झंडे लगे हुए हैं।

यह सीन है| उसके एक पार कुछ गाँव दिखाई दे रहा है| उसके इस पार कुछ हरे भरे वृछ लगे हुए है| इसमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है। कुछ--

हमें नज़ारा दिखाई दे रहा है इसके नीचे टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स का कलर सफ़ेद दिखाई और कत्थाई दिखाई दे रहा है इसके ऊपर छत है।

छत का कलर ब्लैक है। इसका इसमें खंभा लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है। उसके बाजु में एक क्यारी लगी हुई है। इसमें छोटे छोटे लगी हुई है। एक पेड़ लगा हुआ --